इस दृश्य में कुछ लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

इस दृश्य में बहुत खूबसूरत सा एक बागान दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पीला कलर का फूल दिखाई दे रहा है ।

बाहर गेट के पास एक ब्ल्यू कलर का मैट बिछा हुआ दिख रहा है।

इस दृश्य में एक अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है।

बाहर में कुछ बहुत बाइक लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसके बगल में बहुत सारे पत्थर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

घास भी दिखाई दे रहा है जो हरे भरे दिख रहे हैं ।

और इसके अंदर पंखा भी लगा हुआ है जो चल रहा है।

इसके बगल में कार लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस बैलून का कलर व्हाइट और रेड है।

इस दृश्य में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो एक पार्क में खेल रहे हैं।

इस दृश्य में एक रोड दिखाई दे रहा है।

जहां पे बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

और ये मूर्ति को माला पहनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

और बाहर में एक चावल का बोरा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

वहां बैलून का कलर येलो और रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है।

और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ पौधे और हरी भरी घास दिखाई दे रहा है ।

जिसमे स्कूटी और उस पे बैठा हुआ एक आदमी का फोटो दिखाई दे रहा है।